और उपर देखियेगा पाणी की टंकी दिखाई दे रही है।

और उपर की तरफ देखिएगा बलून से सजे हुए पिलर भी दिखाई दे रहे है सफ़ेद और काले कलर के बलून है।

और उपर पंखा दिखाई दे रहा है और लाइट्स भी नजर आ रही है।

और देखिएगा उपर की तरफ ढेर सारी लाइटे दिख रही है।

और सामने कांच भी दिखाई दे रहा है मिरर दिखाई दे रहा है तीन मिरर है तीन कांच दिखाई दे रहे --

और काफी सारे पैकेट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे है और कुछ बॉक्सेस भी नज़र आरे है और सामने दिखिएगा एक पंखा दिखाई देरा है दो तिन पंखे नज़र आ रहे है।

एक ई रिक्शा दिखाई दे रही हैं उसके पास में एक आदमी खड़ा हुआ हैं सफेद कलर का टी शर्ट और सफेद कलर का चड्डा पहने हुए।

पेनिक साइकल लिखा हुआ है और उपर रेलिंग भी नजर आ रही है।

एक मंदिर नज़र आरा है काफी बड़ा मनदिर है जो की खाफी खुबसूरत लग रहा है लाइटो से सजा हुआ है और यहाँ पे देखिएगा ढेर सारी पब्लिक यहाँ पर बेठी हुई है।

और यहा पर काफी सारी लाइटसे भी नजर आ रही है बिजली के तार दिखाई दे रहे है।

देखिएगा स्कूटी बाइक्स खड़ी हुई नजर आ रही है।

और दो व्यक्ति दिखाई दे रहे है आपस में बात कर रहे है एक लडकी निचे बेठी दिखाई दे रही है।

पेंस है बर्थन की दुकान दिखाई दे रही है यहा पे काफी सारे बर्थन--

और सामने एक व्यक्ति भी खड़ा दिखाई दे रहा है और दो लाइटें दिखाई दे रही है देखो तांबे पीतल के कलश भी दिखाई दे रहे हैं तो थैलियों में ऊपर टंगे हुए है।

ये देखियेगा फ्रेंड्स काफी बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है यहाँ पर और काफी सारी कुर्सी टेबल्स नज़र आ रहे है एक व्यक्ति जो की कुर्सी पर बेठा हुआ सामने की तरफ देख रहा है।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

यहा पर कुड्सी रखी हुई है यहा पर दो लोग बेठे हुए है सामने की तरफ देखिएगा--

एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जहा पर काफी सारे--

ये देखिएगा फ्रेंड्स यहा पर मुझे एक बड़ा सा बोर्ड नजर आ रहा है।

ये दिखेयेगा फ्रेंड्स बहोत ही खुबसुरत राधा कृष्ण की मूर्ति दिखाई दे रही है इसमें कृष्ण श्री कृष्ण जी--

और पीछे देखिएगा एक दीवाल दिखाई दे रही है जिसपर रेड कलर हुआ है।

यहा पर काफी सारे मुझे पेकेट दिखाई दे रहे है दुकान है ये--

यहां पे देखियेगा फ्रेंड मुझे काफ काफी बड़ी यहां पर देखियेगा छत दिखाई दे रही हैं।

काफी बड़ी छत है निचे देखिये ढेर सारा सामान--

यहा पे देखियेगिगा फ्रेंड्स एक सामने व्यक्ति खड़ा नजर आ रहा है एक बच्ची खड़ी नजर आ रही है।

और उपर की तरफ देखिएगा दो लोग खडे है रेलिंग के पास में।

और यहां पे देखेगा खिड़की नजर आ रही है और एक बड़ा सा देखो दरवाजा गेट नजर आ रहा है।

और एक बोर्ड भी लगा हुआ है और समाने देखिएगा एक बाइक भी खड़ी है।

और इसमें देखिएगा हरे कलर की टीसर्ट और ब्लू कलर का चड्डा पहन रखा है।

एक इधर साइड से जरा है एक इधर साइड से रास्ता जारा है और काफी सारे हरे हरे पेड़ दिखाई देरे है पीछे की तरफ वाइट में एक बिल्डिंग दिखाई देरी है सफेद और ऑरेंज कलर की--

और उपर की उपर देखिएगा आसमान दिखाई दे रहा है नीला नीला--

और दीवारों पर खूब सारी घडिया सजी हुई है और उपर देखिएगा लाइट्स भी नजर आ रही है।

यहा सामने की तरफ एक जंगल दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में।

और काफी सारे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है हरे हरे से।

और दूर देखिएगा पहाड़ भी नजर आ रहा है काफी बड़ा है।

और उपर देखिएगा नीला नीला आसमान भी दिख रहा है।

और यहा का नजारा देखिएगा काफी खुबसूरत लग रहा है।

और यहा पे देखिएगा मैदान में कुछ लोग भी बेठे हुए है और उपर देखिएगा नीला नीला आसमान भी दिख रहा है।

यहा देखिएगा फ्रेंड मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है और पेड़ के बिच में देखिएगा एक लड़का चड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स एक मैदान दिखाई दे रहा है और आजू बाजू देखिएगा घर दिखाई दे रहे है बड़े बड़े और पेड़ दिखाई दे रहे है और देखिएगा आसमान में देखिएगा--

सूरज दिखाई दे रहा है चमक रहा है शाम का समय है ये--

एक टेबल पर कगज रखा हुआ है उस पर पिचरे बनाई हुई है पंछियों के पिचर बनाई हुई है जो की काफी खुबसूरत लग रही है और जिसमे देखिएगा--

और आसमान देखो आधा ब्लू और आधा डार्क ओरेंज कलर का दिखाई दे रहा है।

और खिडिपिक पे पर्दा टंगा दिखाई दे रहा है साइड में एक अलमारी भी दिखाई दे रही है।

इधर देखिएगा फ्रेंड्स एक जंगल एक का सीन दिखाई दे रहा है जंगल दिखाई दे रहा है।

जिनके देखिये बालकनी नजर आ रही है और काफी सारी खिडकिया दिखाई दे रही है।